अ कुछ गंदा सामान भी पड़ा हुआ है इधर--

और इस अ शॉप में बहोत सारे अ चाभी के रिंग दिखेरहे हैं।

की डोरेमोन की बहुत सारे--

जो की अं बहोत ही ज्यादा सुंदर भी है।

ये किसी शॉप के बाहर ये बाहर लग रहा है अ--

डस डस्टबिन भी दिख रहा है इधर से और बाहर से कुछ गाड़ी वगैरह भी दिख रहे हैं अ उस अ--

यह एक साफ लग रहा है जो की--

पेड़ पौधे ही लगा हुआ है। दूर दूर से पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा है और उस इसके सामने--

और छोटा छोटा अ सेल्फ में समान साइज करके रखा गया है जैसे कि अचार का डब्बा--

जोकि बहोत ही ज्यादा अच्छा दिख रहा है।

और इस विद्यालय के सामने एक--

ये एक शॉपिंग मॉल ए जहां बहुत सारे ए कपड़े रखा गया है।

अह बहुत सारे बेंच भी रखा हुआ है।

अम बहोत सारे पहाड़ पहाड़ी इलाका है ये और अ अम बहोत ही ज्यादा घना जंगल है इधर --

और जोकि अ इस झरना को बहोत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा--

इन जगह पे बहोत सारे बत्तख दिख रहे--

अह लड़का कुछ प्रजेंटेशन दे रहा है।

मूवी दिख रहा है शायद अंदर और भी लोग है जोकि नहीं दिख रहे हैं इस फोटो में--

ये एक सैलून है जहां पर एक आदमी सैलून के बाहर खड़ा हुआ है।

और बहुत ही सुंदर तरीके से--

घर के अंदर दो दो सोफा भी रखा हुआ है एक एक टीवी भी रखा हुआ है।

अ से बहोत लोग आ जा रहे है।

अ एक बच्चा एक बच्चा आगे और एक बच्चा पीछे है।

जो की बहोत ही सुंदर दिख रहा है इस टा इस अ पिक्चर में--

एक कार को रोड के साइड पे अह रखा अह रखा गया है एक --

दो पक्षी दिख रहे हैं जो की बहोत ही ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं।

ये एक फर्टिलाइजर स अह सॉप है जहां पर की अह कृषि-कृषि करने का सब कुछ सामान मिलता है।

जोकि बहोत ही प्यारे और बहोत ही ज्यादा सुंदर दिख रहे--

ये कोई श शॉपिंग मॉल लग रहा है जो कि इनोग्रेशन हो रहा है।

अं जोकि वाइट कलर में कलर किया गया है।

अह एक कच्चा सड़क दिख रहा है।